के अगल बगल बहोत सारे हरे भरे पेड़ लगाए हुए हैं।

नदी के बा-बाहर साइड एक टावर बनाया हुआ है जिससे कि बहुत सारे तार बांधे हुए हैं।

यह एक दृश्य है जिसमें की चार लोग एक वाइट कलर की पिकअप को देख रहे है।

यह एक होटल का दृश्य है।

एक आदमी झंडा के नीचे वाइट कलर का ऑरेंज कलर का हरा कलर का चित्र बना रहा है।

एक घर दिख रहा है जिसके ऊपर आनंद डिस्टिक ऑफिशयल लिखा हुआ है।

दुकान के बाहर एक ब्लू रंग के कार लगाए हुए हैं और दो तीन लोग दिख रहे हैं।

यह एक गाड़ी सर्विस सेंटर का दुकान है।

बॉक्स के ऊपर छे लाइट बंधे हुए है जो कि जल रहे है।

उसके बगल में एक कुर्सी है जो की कुर्सी का कवर किया हुआ है पिंक कलर का और एक आदमी है जो इसको ऑपरेट कर रहा है डी_जे को।

यह एक तस्वीर है जिसमें कि एक इमारत बहुत सी बड़ी दिख रही है।

उसके अगल बगल बहोत सारे पेड़ लगे हुए--

जिसने की बहुत सारे कबर्ड बनाए हुए हैं और बहुत सारे चप्पल रखे हुए हैं।

क्या एक तस्वीर है जिसमें की रोड दिख रहा है।

दो तीन लोग दिख रहे हैं और करकट का बनाया हुआ गाड़ी बनाने के लिए छाया मे रखने के लिए।

वॉल पे बोर्ड लगी हुई है बोर्ड में तीन काले रंग के सॉकेट लगे हुए हैं।

इसमें की चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई हुई है और घर के दीवाल पे एक पोस्टर लगाया हुआ है।

के बाहर कुछ कार्टून रखे हुए हैं ब्राउन कलर के।

लेज कुरकुरे ये सब लटकाए हुए हैं रस्सी पे।

दुकान में लगाने के लिए शटर है वाइट कलर का --